इस तस्वीर मेंएक जिला पड़ता दिख रहा है सफेद दीवारें दिख रही हैं।

इस तस्वीर में कुछ कार्यक्रम चलता हुआ दिख रहा है कुछ महिलाएं दिख रही है। --